यह पेट्रोल पम्पे के पास की तस्वीर है यहां पर पेट्रोल पंपा है।

साइड में भी एक अन्य दुकान है यहां पर व्यक्ति खड़े हुए हैं।

इसमें डोर बने हुए हैं।

यह एक सड़क के किनारे की तस्वीर है।

इस पर एक बैनर लगा हुआ है।

एक बड़ा बैनर लगा हुआ है।

यहां पर किसी संस्था के व्यक्ति हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और येलो कलर का परणा गले में डाला हुआ है।

साइड में पे डिजाइन बने हुए हैं।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी है यहां पर थोड़ी थोड़ी घास पड़ी हुई है।

इसके पास में और मकान बने हुए हैं।

यहां दीवारों पर स्लेटी कलर हुआ है।

गेट है और थमले है लाइटिंग है।

यहां कुछ व्यक्ति है और इस पार्क में बड़ी बड़ी घास आई हुई है।

कुछ कपड़े अलमारीयों में रखे हुए हैं और कुछ कपड़े स्टैचूओ को पहनाए हुए हैं।

बैनर भी चिपके हुए हैं फैन भी है।